बहुत ही बड़ा पारक है और यहां पर--

क्योंकी बहुत ही बड़ा है।

और वहां पर एक्स रे ई_सी_जी की जाती है।

यह एक जिम है जोकि बहुत ही बड़ी हैं।

कुछ छोटे हों कुछ बड़े हैं।

और यहां पर फ़िशेज़ रखी गई हैं कुछ ब्लैक कलर और कुछ--

और धनिया दिखाई दे रहा है और लहसुन--

और यह फ्रूट्स की दुकान है जैसे कि यहां पर--

वह व्हाइट कलर का है और यहां पर एक मशीन है जो भी--

यहां पर तीन चार सेलेपें बनी है।

यह एक बैंक है और यह बहुत ही बड़ा है इसके बाहर एक--

यह एक बहुत ही बड़ा मैदान है और--